स सई साथ में झाड़िया भी है ये भी बहोत --

फ्लोर जमीन पर घास हैं।

साथ में स्पीकर्स भी काफी रखे हुए हैं।

तीन औरते है वो अपनी योग पोस्चर में है।

रात का टाइम है तो इसलिए कोई भी पेशेंट आह अ डिजिटल आते जाते हुए नजर नहीं आ रहा हैं।

अपनी फॅमिली के साथ वोलोग वॉटरफॉल का मजा ले रहे हैं।

साहिबजारज शहर में प्रवेश करने से बहार से ली लगी है।

जिम की मशीने काफी एडवांस नजर आ रही हैं।

। बांध के ऊपर मौसम दिख रहा हैकी--

पर रेनोवेशन का काम चल रहा है।

उम दो मजदुर खड़े हैं वह --

अ जहां बहुत सारी झोपड़पट्टी हमें नजर आ रही हैं।

ताकि उसके आउट एरिया पर फिनिसिंग दी जा सके ईदर फॉर्म टाइल्स --

एक उम भैया की साईकल खड़ी है वो भैया भी खड़े हैं।